सब अपना अपना आसन पे बैठी है।

बहोत सुंदर सजा रखा जंग तरह तरह की फुल भी--

लगे हुए की और हरा हरा--

म्म मुंडे पे बैठे हैं मेज पे खाना रखा हुआ है सब तरह तरह से--

बहुत सुंदर सुंदर राखियां मिलती हैं खौर--

और बोहोत सुंदर मॉल और दिखाई दे रहा है बड़े बड़े गुब्बारे भी--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

और यहां सब तरह के--

और यहां खाली जगह भी दिखाई दे--

और ए_सी फ्रिज ऐसे ऐसे सामान सारे मिलते हैं।